मुझे दवाई दिख रही है।

मुझे आदमी दीख रहे हैं।

मुझे पेड़ पौधे दीख दि रहे हैं।

मुझे लट्टू दी रहा है।

मुझे आकाश दिख रहा है।